घर का अंदर घुस रहा है।

एक भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है।

उसका बाहर में एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

बैलून से बहुत सुंदर से सजाया हुआ है।

अ लाल रंग का कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में सीलिंग के ऊपर लाइट जल के है।

एक बड़ा गेट भी दिखाई दे रहा है।

जिनमें बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।

और एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है।

इसका ऊपर बहोत सारा रस्सीया भी दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

और दो कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

द सोटो लिखे हैं ऊपर में।

कुरकुरे भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में बहुत सारा फल दिखाई दे रहा है।

पोमग्रेनेट भी दिखाई दे रहा--

ये तस्वीर में दो बड़ा बड़ा टिफिन दिखाई दे रहा है।

कुछ बंबू जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।